और इस मंदिर के आगे दो व्यक्ति भी खड़े है और मंदिर के जो गेट है वो देखने --

यह एक इस्कूल है और यहाँ झंडा तुलन किया जा रहा है।

यह एक मोर है। यह मोर देखने में देखिये कितना खुबसूरत लग रहा है।